यह दृश्य पेट्रोल पंप की है जहां का सीलिंग सफेद रंग का है।

यहां पिलर बना हुआ है जिसमें कुछ पोस्टरस चिपकी हुई है।

टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर टिशु ग्लास रखा हुआ है।

यह दृश्य एक साइकल के दुकान का है जहां पे एक लाइन से बहुत सारी बड़ी बड़ी साइकल कुछ छोटे साइकल रखे हुए हैं।

साइड साइड में कुछ छोटे पत्थर है कुछ मिट्टी है ।

के ऊपर छोटे छोटे घास उगे हुए हैं।

आगे सीढ़ी बना हुआ है उस पे जानीवास बिछा हुआ है और एक घड़ी लगा हुआ है।

इसके ऊपर लाइट्स लगी हुई है जोकि बंद है ।

आगे सीढ़ी बना हुआ है साइड साइड पे खिड़की भी बना हुआ है।

आइसस्क्रीम का फ्रिज रखा हुआ है और इसके बगल में कुछ कुछ सामने रखी हुई है।

यह दृश्य में बहोत सारे बावर्ची है।

यहां पे बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

दृश्य में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

बीच बीच पे ऑटो लगा हुआ है और कुछ गाड़ी लगा हुआ है।

यहां कुछ गमले ऊपर टंगे हुए हैं जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं।